मुझे इस तस्वीर में दो बिस्तर दिखाई दे रहे हैं।

यह कमरा मुझे एक कांफ्रेंस हॉल लग रहा है।

मुझे इस तस्वीर में दो बूढ़े दिखाई दे रहे है।

बगल में दो झंडे भी लटकाए गए हैं।

ये दुकान का रंग ग्रीन ब्लू व्हाइट ब्राउन में नजर आ रही है।

यहां यहां मुझे चार लड़की नजर आ रहे हैं और एक लड़की खड़े होकर दिख रही है।

दीवार में एक ए_सी चिपकाए गए हैं।

ये इस तस्वीर में एक कमरा जैसा नजर आ रहा है।

ऊपर बेडशीट बिछाया गया है सफेद रंग का।

बगल में एक डीलर शॉप जैसा भी नजर आ रहा हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक सुंदर सी बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

बगल में एक बड़ी सी बिल्डिंग भी नजर आ रहे हैं।

टेबल में बहुत सारे स्वेटर भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बस जैसा नजर आ रहा है।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

कमरा का रंग क्रीम कलर में है।

बॉक्स के अंदर दूध भी नजर आ रहे हैं।

हे कमरा का रंग सफेद रंग में दिख रही है।

और ये एक कमरा देख रही है यहां बहुत सारे कार्टंस भी नजर आ रहे हैं।

खुले आसमान भी देख रहा है पीछे में--